यहां पर एक सड़क दिख रही है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यह एक किसी कंपनी लग रही है। किसी चीज़ की सुन्दर एकदम व्यू है। यहाँ पर जाया जा सकता है।

पत्थर बहोत सारे यहां पे पेड़ वेड सब कुछ है।

यहाँ पर भी एक झरना दिया गया है जो बहुत लम्बा बह रहा है। जिसके बहने पर बहोत सारे पेड़ पौधे भी नस्ट हो जा रहे हैं। पहाड़ से आता हुआ ये --

अ अ पहाड़ से आता हुआ ये झरना बहुत सी खूबसूरत दिख रहा है।

बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है यहां का। मतलब एकदम सुनसान इलाका लग रहा है जैसे कोई रहता ही नहीं यहाँ पर।